यह फोटो इंडियन ऑइल पट्रोलीअम की है ऑरेंज कलर ब्लू कलर से रंगा हुआ है।

यह फोटो एक आम की दुकान की है जहाँ बहुत सारे हरे आम रखें हुए हैं।

और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं इसके पीछे एक बड़ा सा जंगल दिख रहा है।

हम स्कूटी मे पेट्रोल डाला जा रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।